तस्वीर में बहोत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहें हैं।

तस्वीर एक रास्ते की है जहाँ कुछ लोग चल रहै हैं कुछ गाड़ियां पार्क की हुई हैं और रोड के किनारे --

फ़ेडरल बैंक है और फ़ेडरल बैंक ऐ.टी.म है इसका कलर ब्लू है इमारत की कलर रेड एंड वाइट है।

यह तस्वीर एक बस स्टैंड की है जहाँ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहै हैं।

जिसमें से कुछ लोग बस के अंदर चढ़ रहे हैं आस-पास पेड़ पौधे दिखाई दे रही हैं बस का कलर पिंक एंड वाइट है।

यह तस्वीर एक छत की है जहाँ तीन महिला एक्सेरसाईज करते हुए नज़र आ रही हैं पीछे कुछ पेड़ पौधे रखें हैं।

यह तस्वीर एक चर्च की है जहाँ सामने खड़ी औरत माइक पे कुछ बोल रही है।

जो ऊपर है उसके नीचे दो व्यक्ति खड़े हैं।

या ब्लू एंड रेड कलर में है सामने एक छाता लगा है और उसके सामने कुछ बाइक्स खड़ी हैं।